इस तस्वीर में बहोत सारा पानी है।

और दूर जाकर एक पुराना घर है पीला रंग का और एक चेयर भी रखा हुआ है।

यह एक स्कूल है जहां पर क्लासरूम में बहोत सारे बच्चे और मैंम गोल गोल घूम रहे हैं।

यह एक खरबूज की दुकान है जहां बहोत सारे खरबूज हैं अंदर भी खरबूज है और बाहर भी खरबूज है ये दुकान में चार आदमी है।

अंदर कुछ सामान भी है।

यह एक कैफेटेरिया है जहां बहुत सारी चीजें हैं।

साइड में कोको कोला का स्टीकर भी दिया गया है।

यह एक अस्पताल है। जहां रूम में दो मरीज हैं।

दोनों मरीजों को ड्रिप्स चढ़ा रहे हैं और एक औरत आई है रूम क्लीन करने के लिए।

इधर तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में खड़े हुए हैं।

सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है और बहोत सारे लाइट भी है।

इधर एक हरा रंग का कम्बी डला हुआ है।

यहां एक पोस्ट ऑफिस है जिसका नाम इंडिया पोस्ट है।

ये पोस्ट ऑफिस का रंग लाल और सफेद है।

इस कार पार्किंग का नाम है प्रो कार केयर्स ।

बोर्ड में बहुत सारे कार्स के फोटो है।

इस तस्वीर में हमें बहोत भीड़ दिखाई दे रही है।

ये एक नीला रंग का बोक्स और ऊपर एक लाल और सफेद रंग का बोर्ड लगाया हुआ है।

नीचे एक पीला रंग का फूल भी गिरा हुआ है।

अ तीन बॉल भी रखे हुए हैं हरी गोल्डन और पीली।

आजू बाजू थोड़े ग्रास हैं और बीच में बहुत सारा पानी है।